पानी भी इतना भरा हुआ है नीचे तक जा रहा है और यहाँ पेड़ भी दिख रहे बहोत सारे लगे हैं यहाँ।

और यहाँ पे देख रहे हैं रस्ते बनी हुई है और बहुत सारा पानी भी है और यहाँ घास भी दिख रही होगी आपको और यहाँ चारो तरफ पेड़ भी है।

दिख रहे होंगे दिवस और ये पुल बहुत बड़ा और यहाँ गाड़ी भी देख रहे होंगे कार भी जा रही है और अ समान भी है और यह दुकाने भी दिख रहे होंगे आप।

और यहाँ बहुत सारी दुकाने भी है। हम देख रहे होंगे और ए जालिया ए बीच मे पुलिया गई हुई है और उसके पीछे बहुत सारे घर बने हुए है।